तस्वीर के दाहिने साइड में दो कार भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक दुकान है जोकि खुली हुई है उसके बगल में भी दो दुकाने हैं दोनों ही दुकानें बंद हैं और दोनों में शटर लगाया हुआ है।

रोड के दुसरे साइड में कुछ खाली जगह है जहाँ पर बहुत से छोटे-छोटे हरे-हरे घास उगे हुए हैं और उसके साइड में एक पुल है पुल के पास बहुत से बड़े बड़े दरख्त भी नजर आ रहे हैं।